व्हाइट कलर का बिल्डिंग है। उसमें बहुत सारा ए.सी. लगा हुआ है ग्रीन कलर का ग्राउंड है बहुत सारा पेड़ है। उधर व्हाइट कलर ब्लू कलर का चप्पल है आकाश है उसपे --

एक बच्चा का मूर्ति है। वो पिंक कलर का फ्रॉक पहनी हुई है। उस पे रेड कलर का बैंड लगा हुआ हैं पीछे फोन पे का --